यह एक अं उ दुकान की तस्वीर है जहां पर काफी सारे बल्ब मटेरियल और काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक पूल की तस्वीर है जओ की --

है और यहाँ पर छोटे-छोटे लाई लाइटों से डेकोरेट --

जाया गया है और यहाँ के परदे लगे हैं जो गुलाबी रंग के हैं |

और अंदर ए.टी.एम दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति इसके सामने खड़ा है जो कि बाइक --

ऐ किसी शादी पार्टी के खाने की तस्वीर है जहाँ पर काफी सारी खाने रखे हुए है।

और इसके ऊपर रंग-बिरंगे सफेद और लाल रंग के पर्दे लगे हुए हैं और लाइट जलती हुई --

जहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसमें काले रंग की शर्ट और सफेद रंग का पेंट पहना हुआ है और गले में रुमाल डाला हुआ है यहाँ एक पंखा नज़र आ रहा है और काफी सारे बॉक्स रखे --

हरी घास लगी है और एक बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा है और काफी सारे फूल नजर --

यह एक एजेंसी की तस्वीर है जहा पर काफी सारी बाइक खड़ी हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ दो व्यक्ति और एक बच्ची हैं जिसने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है और पीछे दिवार पर एक पोस्ट --